अंकल हैं इनके साथ में इनका बच्चा है इन्होने एक कोट पहना है रेड कलर का और टाई लगाया और इनके ऊपर में फिर से और एक पता नहीं क्या लगाया है।

पे यहाँ पे टेबल है टेबल में यहाँ पे टू सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ऐसे करके दिया हुआ है बहुत सुंदर।

और एगो उधर से बायपास हो रहा है एक और --

चे चर्च में फादर है बहोत सारे लोग चेयर पे बैठे हैं और यहाँ पे ड्रम बजा रहे एक अंकल और यहाँ पे बहोत सारे लोग चेयर पे बैठे हैं ऊपर में बहुत सारे बेलून हैं स्काई ब्लू पिंक और यहाँ पे वाइट देखने में बहुत सुंदर लग रहा है क्रिसमस ट्री भी है देखने में बहुत सुंदर है ।